बहुत से गाड़ियां खड़े हुए हैं।

ये एक श्री विद्या ऑडिटोरियम स्कूल है।

कार खड़ी हुई है वह कार ब्लू कलर की है।

वो बहुत खूबसूरत दिख रही है।

ये एक बस स्टैंड है बस स्टैंड के पास आदमियां सभी बस के लिए--

वह वैन्यू बहोत खूबसूरत दिख रहा है।

ये एक बहुत बड़ा बस स्टैंड है।

ये एक पार्क है पार्क के पास एक डेविल का वेन्यू है।

आराम से आदमिया बैठे हुए हैं।

बड़े बड़े झाड़ है सभी है बैठने के लिए --

वहां पर ये एक बोर्ड है।

ये एक पार्क जैसा है।

चार फ्लोर की बिल्डिंग है।

एक क्लास ले रहे हैं इसमें एक लेक्चर दे रहे हैं।

इसीलिए वो क्लास लेने में बिजी हैं।

वहीकल्स ऑटोमोबाइल्स की दुकान शॉप है।

उसमें बड़े बड़े गाड़ियां हैं।

और एक्टिवा गाड़ियाँ भी हैं।

टेबल्स लगाकर वो बाजू बाजू बाजू बाजू में।

यहां भी फ्रूटस हैं ऑरेंज है बनाना है एप्पल है।

सभी मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं।

सभी अह सभी दा तबला लेकर--

डांस करते हुए रोड पर जा रहे हैं।

एक औरत अदरक लहसुन छिल रही है।

यह एक कपड़ों की शॉप है कपड़ों की शॉप में कलर कलर के डड्रेसेस हैं।

ये एक बिल्डिंग पर काम चल रहा है।

वहां सभी मजदूर काम कर रहे हैं।

और बिल्डर भी वहीं पर देख रहा है।

उसमे फुल झाड़ा झाड़ा है।

वाकिंग कर रहे हैं एक रेड --

पर्पल कलर के अअ शर्ट पर ब्लू कलर का कोट है।

ओ पीकॉक डांस कर रहे है।

तलाब के पास एक क्रोकोडाइल सो रही है।

झूले के सीढ़ियां ग्रीन ग्रीन हैं।

मेबी हेल्प का एक बोर्ड लगा हुआ है उधर एक स्टाफ बैठा है।

कुछ इन्फॉर्म कर रहा है।

यह एक सिग्नल है सिग्नल के पास बसें खड़े हुए हैं।

एक स्टेट बैंक इंडिया का पोस्टर है।

दो आदमी बैठे हुए हैं एक औरत एक मरद बैठे हुए हैं।

उन्होंने हाथ में बुक्स पकड़े हुए हैं।